यहां पीले रंग की दीवार है दीपक सेंटर सर्विस है और वहां पे कूलर रखा हुआ है वाटर कूलर भी रखा हुआ है।

यहां पे ब्लू कलर का थोड़ा सा पेंट भी नजर आ रहा है।

यहां दो हिरण नजर आ रहे हैं थोड़े पीछे भी नजर आ रहे हैं हिरण हरियाली है घास फूस नजर आ रहा है।

येल्लो कलर के व्हाइट कलर का पेंट है दीवार पे वॉल लगी है।

रूम है रूम में दो लैंप है बैलून लगी हुई हैं।

ये एम_एम_टी_सी पंप गोल्ड --

यह एक भीड़ भारम बाला इलाका है।

येलो कलर का शैंपू ग्रीन कलर की बॉटल ऑरेंज कलर की बॉटल व्हाइट कलर की बो --

यहां पे रिसेप्शन नजर आ रहा है रिसेप्शन पे ये --

सामने में ट्रैक बना हुआ है नारियल के पेड़ नजर आ रहे--

यहां पे स्टैचू भी नजर आ रहे हैं।

दो फोटो पड़ी हैं यहां पे भगवान की और सामने में कुछ--

सामने दो तीन शॉप नजर आ रही है उसपे बोर्ड लगा है आर्यावत टूर एंड ट्रेवरल्स ।

सामने पहाड़ी इलाका है थोड़ी मट्टी नजर आ रही है थोड़ी हरियाली है।

और सूरज छिप रहा हैं और हरे रंग की घास नजर आ रहीं हैं।